छत का ढलेइया हो रहा है बहुत सारा मिस्त्री लेबर लगे हुए हैं।

दुकान में शटर लगा हुआ है ऊपर बोर्ड है ।

दुकान के आगे तीन बॉल्ब है।

यहाँ पे मिटाई की दुकान नजर आ रहा है। बहुत सारा काउंटर पर मिटाई लगा हुआ है।